जो हर दिन आप सभी के घर तक पहोचते हैं।

यह एक घर का आलीशान हिस्सा है।

और यहां पर दो बाइक भी खड़ी हुई है।

ये इस ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहे है।

झीरन अपना चारा खा रहे हैं।

और इस क्लासरूम में पंखे लगे हुए हैं।

बहुत सारी पूजा की अ विधियां भी बनी हुई है।

और साइड में दो तीन लेडिस खड़ी हुई है।

और एक वर्कर ईंट पकड़ाने का कार्य कर रहा है।

और बराबर में एक लड़का है और आस पास गाड़ी के हैं।

यह एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और पीछे बहोत सारी बसें हैं और--